यहाँ पे बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं जोकि बॉडी बनाने में हेल्प कर --

यह सारी मशीनों की वजह से लोगों को बॉडी बनाने में आ --

तस्वीर एक स्कूल की है जहाँ पर योगा सिखाया जा रहा हैं यहाँ पे बहोत सारे बच्चे लाइन बनाकर बैठे हुए हैं और वह सारे लोग योगा को सिख रहे हैं। उन्हें एक टीचर योगा सीखा रही है।

जिनका कलर व्हाइट है कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं और रोड के किनारे एक बड़ी सी बिल्डिंग है जोकि की है और इसे पूरा सजाया गया है लाइटें लगाई गई हैं।

की ऊँचाई बहोत ही है और लोग यहाँ पर आना पसंद करते हैं। लोग यहाँ पर घूमना पसंद करते हैं।

वह बहुत ही ऊंचे ऊंचे हैं। उनके ऊपर बहुत सारी घास है। कुछ पेड़े उगे हुए हैं जो की हरे --

यह तस्वीर एक नदी की है जहां पर नदी के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है जिससे नदी को आसानी से पार कर सके और यहाँ नदी के किनारे एक रोड बनी हुई है जिस पर गाड़ियां चल रही हैं।

तस्वीरे एक घर की है जो कि दो मंजिली का घर है। यहाँं पर बहुत सारी लाइटें लगाई गई हैं जो कि जल रही हैं और घर के बाहर कुछ दो-तीन पेड़ भी हैं और एक गाड़ी खड़ी है।

और यहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं होता है इसलिए लोग लाइब्रेरी आया करते हैं और यहाँ पे एक ऐसी भी लगा हुआ है।